बस्ती दिखत बानी कितनी अच्छी बस्ती दिखत बानी छोटन-छोटन में यह जीजी भईया रेट बानी बहुत प्यारी दिखत बानी बहुत सुन्दर दिखत बानी।

सब नदी देखत बानी सपाई-सुपरी देखा तानी बहुते अच्छी देखत तानी अच्छी देखत तानी सब समय अट कानि रउवा बहुत जने देखत बानी।

बहुत लोग दिखत बानी चेक होत बानी जहा लो जने बैठत बानी डोक्टर होस्पीटल देखत रूम देखत बानी--

बड़े-बड़े भैया देखत बानी सामान चेक करत बानी यह बड़ी-बड़ी सिटीयों में होत बानी।

गार्डन बानी जो चैरउवा ऊपर-नीचे सामान बानी बहुत प्यारा लागत बानी।

पंकी लगत बानी माला चढ़त बानी बहुत सुन्दर दिखत बानी जय बालाजी महाराज--

पन भैया बड़े भैया रेत बानी पेड़-पौधे रखत बानी सामने गेट बानी।

पांच मंज़िल दिखत बानी पांच मंज़िल दिखत बानी। आस-पास बिल्डिंग बानी। बोहत प्यारी दिख--

क्लास दिखत बानी इथे-उथे क्लास बानी बोहत अच्छी दिखत बानी बोहत सुन्दर दिखत बानी ।

उथे पेम बनवात बनी बोहत सुन्दर छुटकन-छुटकन बेटवा बैठत बानी --

रउआ बहोत अच्छी दिखत बानी सड़क बानी बहोत प्यारी लगत बानी अगल-बगल पेड़-पौधे बानी बहोत सुन्दर दिखत बानी--

इथे वो बैठने की जगह बानी पार्क में टावर लगत बानी बड़े पौधे लगत बानी नर्सरी लगत बानी--

रउआ बहोत अच्छी पहाड़ी बानी नहात बानी जी-जी भैया नहात बानी बहोत अच्छो लगत बानी पहाड़ी जंगली--

कत बानी पेड़-पौधे लगत बानी ग्राउंड भी बहोत सुन्दर दिखत बानी बहोत अच्छो लगत बानी देख--

रउवा मैच फुटबॉल खेलत बानी ग्राउंड में फुटबॉल होवत बानी सब रउवा देखत बानी सर्दी का मौसम होवत बानी--